यहाँ पर बाल काटे जा रहे हैं सामने एक बच्चा बैठा हुआ जो बाल कटवा रहा --

ये एक अच्छा और सुन्दर सा कोई संगीत का कार्यक्रम चल रहा है।